एक तालाब है। नाव खड़ी है। एक मंदिर है। बहोत सारे बिल्डिंग है।

कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं।

इधर एक सामने एक बस खड़ी हुई है डेकोरेशन है फूल की दुकान है गजरा वजरा बिक रहे हैं।